का बोर्ड लगा है टीन शेड बना है काँच लगे है ऊपर जिम है और लाइट जल रही है नीले कलर टीन शेड है बगल में एक अंडर गारमेंट्स का बोर्ड लग--